hello ruby के स्पोकन ट्यूटोरियल में स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
ruby क्या है
विशेषताएँ rubygems और ruby पर सहायता
संस्थापन ruby कोड रन करना
कमेंट करना
puts और print में अन्तर
यहाँ हम उबंटु लिनक्स वर्जन 1204 ruby 193 का उपयोग कर रहे हैं
ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए इंटरनेट से जुड़ा होना आवश्यक है
आपको लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करने का ज्ञान होना ज़रूरी है
अब मैं समझाऊँगी कि ruby क्या है
ruby ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषांतरित लेखन की भाषा है
यह सक्रिय मुक्त स्रोत प्रोग्रामिंग भाषा है
यह एक आकर्षक रचनाक्रम है जिसे आसानी से लिख पढ़ सकते हैं
अब ruby की कुछ विशेषतायें देखते हैं
ruby काफी वहनीय है
ruby प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है
smalltalk basic या python की तरह ruby में वेरिएबल्स का डाटाटाइप नहीं होता है
यह स्वचालित मेमोरी प्रबंधन का समर्थन करता है
ruby एक मुक्त प्रारूप भाषा है
आप अपना प्रोग्राम किसी भी लाइन या कॉलम से लिख सकते हैं
ruby इंटरनेट और इंट्रानेट अनुप्रयोगों के विकास में उपयोग होता है
rubygems ruby की प्रमुख विशेषताओं में से एक है
rubygems ruby प्रोग्रामिंग भाषा के लिए पैकेज मैनेजर है
यह ruby प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज के वितरण में मान्य प्रारूप देता है
आप अपने gems बना और प्रकाशित कर सकते है
rubygems की ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए लिंक पर जाएँ
ruby की ज्यादा जानकारी के लिए आप दर्शाए लिंक पर जा सकते हैं
आप उबंटु सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग करके ruby को संस्थापित कर सकते हैं
उबंटु सॉफ्टवेयर सेंटर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर उबंटु लिनक्स ट्यूटोरियल्स का अनुकरण करें
ruby संस्थापित करने के दूसरे तरीके इस स्लाइड में दर्शाए हैं
ruby कोड को तीन तरह से निष्पादित कर सकते हैं
command line interactive ruby
file की तरहहम निष्पादन के हर तरीके को देखेंगे
सबसे पहले देखते हैं कमांड लाइन से hello world कोड को कैसे निष्पादित करें
एक साथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
आपके स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो दिखती है
कमांड टाइप करेंruby space hyphen e space सिंगल कोट्स में puts space फिर डबल कोट्स में hello world और
enter दबाएँ
हमें hello world आउटपुट मिलता है
टर्मिनल पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए puts कमांड का उपयोग होता है
hyphen e flag केवल सिंगल लाइन कोड को निष्पादित करता है
मल्टीपल hyphen e flags मल्टीपल लाइन कमांड्स का निष्पादन कर सकता है
इसका अभ्यास करें
अब पिछली कमांड के लिए अप एरो की को दबाएं और
टाइप करें space hypen e space सिंगल कोट्स में puts space 1+2 और
enter दबाएँ
hello world और 3 आउटपुट आता है
अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं
अब हम interactive ruby के बारे में सीखेंगे
interactive ruby ruby कमांड को तुरंत निष्पादित करता है
आप ruby स्टेटमेंट्स को रन करके उसका आउटपुट और अन्य वेल्यूस देख सकते हैं
ruby के पुराने वर्जन के लिए irb अलग से संस्थापित करें
अब ruby कोड को irb से निष्पादित करते हैं टर्मिनल पर जाएँ
टाइप irb और एंटर दबाएँ
interactive ruby आरम्भ के लिए
टाइप करें puts space डबल कोट्स में hello world और एंटर दबाएँ
hello world आउटपुट आता है
और रिटर्न वेल्यू nil आता है
irb से बाहर आने के लिए टाइप करें exit और एंटर दबाएँ
आप ruby प्रोग्राम फाइल से भी रन कर सकते हैं
कोड लिखने के लिए अपने चयन का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं
मैं gedit टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर रही हूँ gedit टेक्स्ट एडिटर पर जाएँ
अब टाइप करें puts space डबल कोट्स में hello world
अब हम सीखेंगे कि मल्टीपल लाइन या ब्लॉक कमेंट्स को कैसे जोड़ें
puts कमांड से पहले
टाइप करें equal to begin और एंटर दबाएँ
equal to begin कमेंट शुरू करने के लिए उपयोगी है
जो कमेंट्स आप जोड़ना चाहें टाइप करें
मैं टाइप करुँगी my first ruby program और एंटर दबाएँ
यह कोड hello world प्रिंट करेगा एंटर दबाएँ
अब equal to end टाइप करें
मल्टीपल लाइन कमेंट्स की समाप्ति के लिए equal to end उपयोगी है
प्रोग्राम की गति को समझाने के लिए कमेंट्स उपयोगी हैं
यह प्रलेखीकरण के लिए उपयोगी है
अब सेव बटन क्लिक करके फाइल सेव करें
फाइल को लगातार सेव करना एक अच्छी आदत है
आपके स्क्रीन पर save as डायलॉग बॉक्स दिखता है
फाइल सेव करने की जगह चुनें
डेस्कटॉप पर मैं rubyprogram नामक एक फोल्डर बनाऊँगी
हम फाइल को इस फोल्डर के अंदर सेव करेंगे
टेक्स्ट बॉक्स name में जो नाम आप चाहते हैं टाइप करें
मैं टाइप करुँगी hellorb
ruby फाइल को dot rb एक्सटेंशन दिया है
फिर फाइल सेव करने के लिए save बटन दबाएँ अतः अब फाइल सेव हो गई है
कोड निष्पादन के लिए टर्मिनल पर जाएँ
सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर करें
निश्चित करें कि आप उस डाइरेक्टरी में हैं जहाँ ruby फाइल है
याद रहे कि हम होम डाइरेक्टरी में हैं हमें सबडाइरेक्टरी rubyprogram में जाना है
ऐसा करने के लिए टाइप करें cd space desktop/rubyprogram और एंटर दबाएँ
फाइल का निष्पादन करें टाइप ruby space hello dot rb और एंटर दबाएँ
हमें helloworld आउटपुट मिलता है
अब मैं puts और print स्टेटमेंट में अंतर दर्शाती हूँ
irb प्रयोग करके इसको समझेंगे
इससे पहले हमें वापस होम डाइरेक्टरी में जाना है ऐसा करने के लिए टाइप cd और एंटर दबाएँ
अब interactive ruby आरम्भ करने के लिए टाइप irb और एंटर दबाएँ
टाइप करें puts space डबल कोट्स में hello कॉमा डबल कोट्स में world
यहाँ कॉमा दो puts कमांड को जोड़ता है
अब enter दबाएं
हमें hello world मिलता है लेकिन अलग लाइन्स में
अब print के साथ इसका अभ्यास करें
पिछली कमांड पर जाने के लिए अप एरो की दबाएँ
puts को print में बदले और एंटर दबाएँ
हमें आउटपुट hello world मिलता है लेकिन उसी लाइन पर
कीवर्ड puts आउटपुट के अंत में एक नयी लाइन जोड़ता है कीवर्ड print ऐसा नहीं करता
कीवर्ड print वही आउटपुट देता है जो हमने दिया है
इसी के साथ हम स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँ
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा…
ruby के बारे में
संस्थापन ruby कोड का निष्पादन
एक से ज्यादा कमेंट जोड़ना =begin और =end
puts और print में अंतर
नियतकार्य के रूप में
अपने नाम और आयु प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखें
हमने इस ट्यूटोरियल में भिन्न लाइन कमेंट्स उपयोग किये
सिंगल लाइन कमेंट देकर देखें
निम्न लिंक पर दिए गए वीडियो को देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल का सारांश है
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
spoken tutorial project team:
स्पोकन ट्यूटोरियलस का उपयोग करके कार्यशाला चलाती है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाणपत्र देती हैं
ज्यादा जानकारी के लिए contact@spokentutorialorg को लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉकटूअ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है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
इस मिशन पर ज्यादा जानकारी निम्न लिंक पर है: spokentutorialorg/nmeictintro
आईआईटी मुंबई से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद